जहां पर पीछे की तरफ एक पर्दा लगा हुआ है।

और यहां पर बिजली के खंभे भी दिखाई दे रहे--

बहुत बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं और यहां पर एक पानी की टंकी दिखाई दे रही हैं जहां पर--

सामने यहां मुझे बहूत सारे बेसिन दिखाई दे रहे हैं।

बहोत सारी खिड़कियां दिखाई दे रही हैं।

और यहां पर बहुत बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ पत्थर भी।

जहां पर कुछ मजदूर कुछ ढल्लाइया करते हुए दिखाई दे रहे है।

सामने यहां मुझे एक लड़का दिखाई दे रहा है।